और यहां हर कोई फूल पेड़ की सुगन्ध लेना पसंद करता है।

मदद करता है एक्सासाइज करते हुए डाइट का भी ख्याल रखते हैं।

फोर जी का उपयोग उच्च गति अनुप्रयागो मोबाइल टी.वी और दैनिक योग्य उपकरणों के लिए किया जा सकता है।

अहह दही जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहें हैं इतना ही नहीं इनके द्वारा कई अन्य उद्योगों के लिए --

कच्ची सामग्री प्रदान की जा रही हैं।

तब मिलन है जो उन लोगों के बीच साथी उनके किसी भी दस्तक तथा --

रेस्टोरेंट ऐक ऐसी जगह होती है।

अ जहाँ खाना कस्टमर के द्वारा ऑर्डर किया गया खाना कस्टमर की टेबल पर परोसा जाता है और खाना खाने के बाद कस्टमर को खाने के पैसे --

डॉक्टर ऐक चिकित्सक व्यवसाय है जो सब स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करता है और --

किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित।

जापान और फिर अन्य पूर्वी एसियो देशों में सेल्भी

पलइ कोटि के भी बने जाते लगें हैं सोफा व अन्य की गद्दी --

का तथा गोद लेने पर भी यह परिवार की संज्ञा

हम अपने घरों का निर्माण अपनी अवश्यकता के अनुसार करते है घरों का निर्माण करने के लिए लकड़ी सीमेंट मोटर्स लोहा और ईंटों की --

ऐसा बिज़नेस है जो वह सबसे ज्यादा अपनाना पसंद करती है आज के समय में खुद को सुंदर दिखाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं महिलाओं को सुंदर दिखने का शौक होता है।

आते हैं अक्सर लोग एक औपचारिक या विश्व व अ व्यवसायिक सेटिंग में लेकिन कई बार अन्य वातावरणो में भी --

और ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए जिनसे हमारा शरीर स्वीकार ना करें।